कुछ आदमी बैठे हुए दिखाई भी दे रहे है।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

जिसके बाहर लिखा है स्टॉप एन्ड शो ।

और उन गाड़ियों को देख रहे हैं।